जहा एक ए गाड़ी पे तिन लोग सवार होके कई जाते हुए नजर आ रहे हे एक इंसान पैदल जाता हुआ नजर आ रहा हे एक आदमी हे जिसने हेलमेट पहने हुए नजर आ रहा हे।

एक सलून है जहाँ पॆ एक आदमी चेयर पर बैठे हुए अपने बाल करता नजर आ रहा है। एक पर्दा नजर आ रहा है ब्राउन कलर का आस-पास कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रहे है एक बड़ा आयना नज़र आ रहा है सामनॆ मॆ--

आ ये एक गेट है जो की पर्पल और ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आ और ये बिल्डिंग --

बुफ़े जैसे कुछ लगा हुआ है जहां पे तीन लोग कहना बांटते नजर आ रहे है बोहोत सारे बाल्टीया है एक आदमी है चसमे बाला जो कहना कहते नजर आराहा है आसपास आ फेनस नजर आ रहे है।